यहा पे मशीन रखी गई है मशीन भी लाल कलर के दिख रही है मशीन की गद्दी और नीचे नीले कलर का मैट बिछा हुआ है यहा पे एक लड़का सीसे मे देख के फोटो क्लिक करवा रहा है।

एक मिरर लगा हुआ दिख रहा है नीचे जमीन पर लाल और काले कलर का मैट बिछा हुआ है।